इस तस्वीर में हमें एक जिम दिखाई दे रही है।

कुर्सियां पड़ी भी नज़र आ रही हैं।

इस सैलून में एक लड़की अपने बाल सेट करवा रही है।

जिसमें घर बनाने वाला है मकान में दो इंजीनियर खड़े हुए दिखाइ दे रहे हैं।

यह तस्वीर हमें एक घर की दिखाई दे रही है।

पंप में कई लोग तेल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं।

कार खराब हुई खड़ी दिखाई दे रही है।

रोड में बहुत सारे व्हीकल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर हमें एक मदान की नजर आ रही है।

कोठी में एक साइड में लेंटर लगता हुआ नजर आ रहा है।

दो कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

जिस पर इंडिया कनाडा इंग्लैंड अमेरिका लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

कार अलग-अलग फूलों से सजी हुई है।

साइड में पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।